और सामने ही एक सूरज डूबता हुआ नजर आ रहा हैऔर कुछ बच्चे भी खड़े हुए हैंपानी में अंदर।

और ग्राउंड के पीछे आप देख सकते हैंकाफी सारे हरे भरे पेड़ नजर।

और छोटी-छोटी अभी कमकम दे वाले भी उठी हैं।

ये कोई दुकान हैजैसे कि एटीएम जैसा लग रहा हैऔर उसके बाहर।

और कुछ नाश्ते की वगैरह की कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की और भी कॉस्मेटिक आइटम काफी सारी चीजें।

और कुछ दो लड़के भी खड़े हुए हैं जो कि छोटी बोट में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।

और इसके दरवाजे बंद हैऔर इसके बाहर काफी सारी मात्रा में लोग बाग खड़े हुए हैंजो कि बच्चों को लेने आए होंगे।

यह कोई कॉलोनी हैजिसके आसपास प्लॉट खाली पड़े हुए हैं।

और ऊपर से पुल निकले हुए हैं।

और रेलिंग बनी हुई हैजो कि खड़े होकर आप नजारा देख सकते हैंऔर काफी मात्रा में पानी भरा हुआ है यहां पे।

और काफी सारी मात्रा में लोग बाग घूम भी रहे हैं काफी सुंदर नजारा है।

और बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं जो कि काफी सारे लोग बैठे हुए हैं और ये कोई म्यूजियम का नजारा है बड़ी ढोलक भी टंगी हुई है।

आप देख सकते हैं यह कोई एक मकान बन रहा है।

और नीचे भी काफी सारे टुकड़ों में पटी पटी लकड़ियां पड़ी हुई और पानी भरा हुआ है।

ये एक बड़ा सा बैर हाउस है जिसमें आप देख सकते हैंगोडाउन बना हुआ है।

ये कोई कोई तीर्थ स्थल है या फिर कोई प्रवचन वगैरह हो रहा है जहां पर आप देख सकते हो काफी मात्रा में पब्लिक है।

काफी मात्रा में पुलिस भी लगी हुई है और बहुत भीड़ है।